और ये उनीशो आससी से चली आ रही है और यहा नीला कलर के बोर्ड लगा हुआ है और तरह--

ये जो इमेज है ये किसी पंचर की दुकान लग रही है और यहा लाल कलर की देवरे लागि हुई है।

और हनुमान जी की फोटो है ऊपर एक इंसान पीली कलर की टीशर्ट पहने बैठ हुआ है केले के पत्ते है आ--